और यहां पे ये क्या रखा है।

एक्टिवा खड़ी हुई है गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पे आप देख सकते हो ये चर्च है। यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है।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

और यहां पे भी लिखा हुआ है।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

यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये--

और यहां पे बिजली की तार देख रही है और यहां पे आप देख सकते हो --

सभी बच्चों ने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी है और यहां पीछे पेड़ ही पेड़ खड़े हुए हैं आप यहां पे देख सकते हो।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

हर तरह का समान मिलता है डब्बा--

यहां पे आप देख सकते हो ये हरियाली हरियाली देख रही है और यहां पे--

और ये पार्क बहोत अच्छा दिख रहा है।

यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर प्वाइंट लिखा हुआ है और यहां पे लाइटों का भी प्रबंध किया गया है।